ये कोई को कोचिंग है जहाँ बहोत सारे बच्चे पढ़ रहे है सामने की ब्रेंच पर एक येलो कलर का टी-शर्ट पहने एक लड़का बैठा है इस सारे ब्रेंच का कलर वाइट है।

एंड इनके नीचे का फर्श भी व्हाइट है एंड इनके ऊपर की छत भी व्हाइट हैं यहां एक --